और लोहे के कुछ बड़ी बड़ी लाइटे भी लगी हुई है उपर खम्बे के उपर--

और सामने कुछ बिजली का बोहोत बड़ा मशीन दिख रहा है।

और सामने कुछ समान दिख रही है और दीवार पर ए_सी लगी हुई है वो भी दिख रही है।

और कुछ पेड़ पोधे दिख रहे है छोटे मोटे हरियाली दिख रही है यहाँ पे--

और उस पहाड़ी के उपर एक कुछ पेड़ पोधे दिख रहे है।

यहाँ पे कुछ दिख रहा है जहा पे कुछ मंदिर है उसके बाहर कुछ सतसंग प्रोग्राम होरा भजन प्रोग्राम होरा कुछ लोग बेठे है मंदिर सामने दिख रहा है।

और यहाँ पे कुछ दिख रहा है जेसे कुछ एक दुकान दिख रही है उसमे बोहोत सारे सामान दिख रहे है किराना के मेडिकल सामान--

और राइट साइड में एक कम्प्यूटर पड़ा है और कुछ रिमोड पड़े हैं जो इसको चालू करने के लिए हैं।

और स्पीकर पड़े केलकुलेटर पड़ा है और कुछ एक कॉपी पड़ी है कॉपी के उपर पेन पड़ा हुआ है।

यहाँ पे एक शेलो की दूकान दिख रही है जहा पे एक आदमी बेठा हुआ है।

और पानी के अंदर भी कुछ कुछ दिख रहा है काला काला सीन --

बटन दिख रहे है और स्टेंड पर ही खड़ी है तीनो--

और यहाँ पे जलाशय दिख रहा है जहा पे कुछ माताए खड़ी दिख रही है पानी के अन्दर हाथ जोड़ रखी है।

और यहाँ पे कुछ एक अ रेस्टोरेंट जेसा कुछ दिख रहा है जहा पर बोहोत सारी ब्लैक कलर चेयर पड़ी हुई है और यहाँ पर सामने एक--

चेयर पड़ी हुई है टेबल है उसके उपर एक गिलास पड़ा हुआ है काच का गिलास है उसमे एक नलकी है।

पानी यो और उसके अन्दर कुछ एक पिने का है कुछ--

जिसमे चार पाञ्च लोग एक साथ बेठ सकते है और उसके बगल में भी ईएसआई चेयर दिख रही है और सामने वहा पे--

बोहोत बड़ा सारा और एक दीवार दिख रही है साइड में--

अ- दूकान दिख रही है जहा पर बोहोत सारे सामान दिख रहे है।

और कंप्यूटर चला रहा है वो और ऊ ले लेफ्ट साइड में कुछ रिवॉर्ड वगैरह पड़े हुए हैं कुछ काफियां वगैरह डायरियां वगैरह दिख रही हैं।

जेसे कोई पान बना रहा वो कोई ऐसी दुकान दिख रही है ।

और एक तस्वीर दिख रही है दो तीन स्टैंड दिख रही है छोटे सामने--

और यह पे कुछ एक एस_बी_आई बैंक जेसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे--

एक आदमी ठेला लेके -ठेला हाथमे हैंऔर जा रहा है।

और यहाँ पे कुछ एक दूकान दूकान कुछ आवेग ऑफिस दिख रहा है यहाँ पे--

और एक डस्टबिन ग्रीन कलर का डस्टबिन दिख रहा है।

एक शीट दिख रही है जहा तीन लोग आपस में बेठ सकते है बात क़र सकते है।

जहा पे लकड़ी का फ्रोम है और उसके अनदर शायद कपड़े की कुछ बेठने की सीट दिख रही है लकड़ी का बनाया हुआ है।

व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखा है। रेड कलर की पेंट पहन रखा है।

और यह पे किसी घर का नज़ारा दिख रहा है यह पे उपर--

जीपे घर पे तरह तरह के पेंट हो रखे है और घर के निचे एक दूकान दिख रही है जो दुकान खुल्ली है उसमे कुछ सामान दिख रहे है।

और यह पर दिवार के ऊपर एक पोस्टर दिख रहा है और यह पर पेड़ पोधे दिख रहे है यह पर एसा लग रहा है कोई बस स्टैंड का नज़रा है यहा पे--

और यहां पे कुछ समान दिख रहा है जहां पे कुछ मटकी के कुछ मिट्टी के बनाए हुए समान दिख रहे हैं यहां पे कप वगैरह बहुत सारे--

और हरियाली दिख रही है राईट साइड में पेड़ पोधे दिख रहे है।

और यहाँ पर कुछ एयरपोर्ट का नज़ारा दिख रहा है जहा पर कुछ एक पोस्टर के अंदर प्लेन बना हुआ दिख रहा है।

एक आदमी यहाँ पर माथे के ऊपर कुछ बांध रखा है और--

अ ब्लू कलर का शर्ट ब्लैक कलर की पेंट पहन रखा है वो दिख रहा है।

और बोहोत सारे स्टैंड दिख रही है आज मुझे खड़े होने की--

और यहाँ पर ब्लैक कलर का पथर पथरो से पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है।

उर ऊपर रंग बिरंगे टेंट लगे हुए है और उसके निचे हेयर सर लोग खड़े है एक आदमी--

और यहाँ पर भी ऊपर एक पेड़ दिख रह है पेड़ जेसे पीपल का पेड़ है उसपे कुछ कपडा बंधा हुआ है पीपल पूजा होती है यह पे और मंदिर दिख रहा है लेफ्ट साइड में--

और राईट साइड में एक आदमी बेठा हुआ दिख रहा है वाइट कलर का शर्ट बांध रखा है उसने--

लेफ्ट साइड में एक भाई लेफ्ट की और जा रहा है --

डिजाईन बनी हुई दिख रही है ऊपर कुछ एलीफैंट का चित्र बना हुआ है।

और यहा जो कुछ एक मंदिर दिख यहाँ पर कुछ एक मंदिर दिख रहा है जहा पर निचे श्री राम चन्द्र सीता माता की तस्वीर बनाई गयी है पेंटिंग --

जो महात्मा है सारे लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे है मुख पर पर्दा लगा रखा है व्हाइट कलर का।

और यहाँ पे कुछ एक नजारा दिख रहा हिया जहा पे ऊपर लगा हुआ है और निचे दो तीन खम्बे लगे हुए है।

टप जेसा दिख रहा है उसमे कुछ सामान पड़ा हुआ दिख रहा है एक पाइपलाइन दिख रही है यहाँ पे--

और कुछ एक पर्दे पे डिजाईन बनी उई दिख रही है तीन चित्र समान दिख रहे है यहाँ पे--

कुछ शादी का प्रोग्राम दिख रहा है जहा पे एक सेल्फी ले रही है लोग लेडिज लोग--

और यहाँ पर समुन्दर का किनारा दिख रहा है समुन्दर का प्यारा नज़ारा दिख रहा है।

अ- ब्लैक कलर के दिख रहे है सारे पेड़ पोधे--

बाल बच्चे खेलते हुए दिख रहे है लेडिज लोग खेलते हुए दिख रही है।

उसमे एक माता की छवि दख रही है फोटो दिख रही--

बोहोत बड़ा दरवाजा दिख रहा है कोई फोर्ट किले वगेरह--

और एक दम कचचा खंडर जेसा बोहोत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ये--

लकडियो की और उसके ऊपर मसला मोंग वगेरह डालेगा लोहे के सरिये वगेरह से कुछ स्टैंड वगेरह बनाई जायेगि उसके अंदर--